यह तस्वीर किसी चर्च की है यहां पर कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आप किसी बड़े पद के लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं।

यह तस्वीर मूलतः किसी बस स्टेशन की है अगर हमें कहीं किसी हम्म दूसरी दूर जगह पे पहुंचना होता है तो हम--

यहां पे खाने के लोगों के खाने के लिए स्टॉल लगाया गया है।